यह मार्केट का सीन है जो कि यहाँ पे बहुत ही बड़े-बड़े अपार्टमेंट और बिल्डिंग दिख रही है और यहाँ पे बिजली के तार बहुत सारे दिख रहे।

और ये डान्स का स्टेप कर रही हैं | काफी बहोत ही सुंदर है और यहाँ के आस-पास में बहुत सारा तार---

यहाँ पे तीन रेड चार रेड कलर का चेयर है बांस है ब्रिज है काफी सुंदर ये लाइट है।

और यह ब्लू कलर का उ नाव है जिसमें बहुत सारे ये बास वगैरा भी है।

नदी है जो की यहाँ पे बहोत सारा नाव भी लगा हुआ है जो की ये खाली है और आस-पास में हरे-भरे पौधे दिख रहे है।

एक अ पटाखा का दुकान है जहाँ पे बहोत सारे पटाखे रखे हुए है और यहाँ पे म बहोत ही हर तरीके के पटाखे रखे हुए हैं।